ये गेराज शोरूम की फोटो है| दो कार्स हैं चेयर हैं टेबल हैं।

पिल्लर्स हैं शोरूम पूरा वाइट कलर का है| गुब्बारे लगे हैं और पोस्टर्स हैं कार के जो न्यू लॉन्च हैं और रूफ है|

समुद्र है| समुद्र में एक शिप है| उसके बगल में एक बोट है।

गैराज में कार एक है।

और टावर्स लगे हैं पेड़-पौधे हैं थोड़े बहुत |